एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग है जिसमें दो विंडोज है बाहर पार्किंग में कुछ कार ठहरे हुई हैं।

और येलो एंड ऑरेंज कलर के फ्लावर्स से इसको डेकोरेशन किया जा रहा है।

रेड कलर के स्टार्स लगाए हुए हैं और एक काउंटर पर लेडी है जिसने वाइट कलर का शर्ट और क्रीम कलर का गॉन पहना हुआ है।

ये कैफे का रेस्टोरेंट का पूरा सेटअप ब्राउन एंड क्रीम कलर में है।

और बहुत खूबसूरत बुकेस बनाकर रखे हुए हैं यहां पर छोटे-बड़े बहुत सारे--

और इस पूरी बिल्डिंग का कलर वाइट एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन में है।